कुछ ताड़ो ताड्स यानि की रेड वहाँ पे दिखा रहा है और ये बिल्डिंग अभी भी तैयाड नहीं हुआ है चल रहा है।

सामने एकशोडुम है शोडुम के सामने एक तीन ऑटो यानि की जैसे की टोटो या ऑटो होता है इस तरह का एक कार खड़ा हुआ है।

एक ऑफिस है जहाँ पे कुछ चेयरे खाली रखा हुआ है। खाली चेयर है वहाँ अभी टेबिल भी है। उसमे टेबिल के ऊपर एक प्रिंटर भी रखा हुआ है।

और पीछे सामने यानि की और भी बिल्डिंग्स है। यहाँ पे और रोड का एक नजारा है। ये--

ये एक बच्चों का गार्डन है आ पार्क होता है जैसे इसमें खेलने के बहुत सारा चीजे है दिखाई दे रहे सामने।

और आदमी ऐसे चल के जा रहा है और आसमान पूरा साफ है और ये एक रोड बना हुआ है सामने--

एक रूम के अंदर का पिक्चर है जिस में दिखाई दे रहा है की अ कुछ चेयर है जो की खाली है यहाँ पे चेयर्स साथ ही में सामने बना हुआ है।

अ यहाँ पे एक जो है हॉस्पिटल का कुछ सेटअप दिखा दे रहा है। जिस में कुछ बेड्स दिखाई दे रहे है। हॉट्स हॉस्पिटल्स के एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है। जिन के मुँह में मास्क लगा हुआ है।

और बाइक से बहोत सारे यहाँ पे सामने-- और एक यहाँ पे गेट भी है जो की खुला हुआ है ग्रीन कलर का गेट है वाइट कलर का भी पिलर है।

जो फ्लोर उसमें बहोत सारा पोस्टर या पिक्चर लगा हुआ है। छोटे बच्चों का अ नीचे एक गेट बना हुआ है और सामने भी एक रेड कलर का साइन बोर्ड भी है। इसपे--

सामने एक खाली अ जैसे की माठ जैसा है यानि की इस में एक आदमी खड़ा हुआ है।